यहाँ पे अपने बैंक क्लास में यहाँ पे जन सेवा केंद हूँ। यहाँ पे केंद्र लिखा है उस पे स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। फाइल में लिखा हुआ है ब्लेक की --

वहा पे एक अ अलमारी है उसमें गुड़िया रखी हुई है भगवान जी भी है शिव जी भी है कान्हा जी भी है ।

गार्डन है। गार्डन में बोहोत सारे हरे भरे हरी भरी दुबा भी है।